यहाँ सामने से एक सड़क जा रही है जो काफी चौड़ी है और खाली है बड़ा सा पेड़ लग रहा है जिसकी छांव में कई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सामने --

अंदर दीवार पे आधी दीवार पर टाइल लगी हुए हैं नीचे फर्श पर टाइल लगी हुई है सामने तो जंगले दिखाई --

ये एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है बोहोत सी मिठाईया रखी हुई हैं। एक प्लेट में चमचा पड़ा हुआ है।

बहोत सारे गेंदे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं छोटे-छोटे गेंदे के पीले फू --